इस इमेज में हमें एक ऑफिस दिख रहा है।

जिसके ऊपर लिखा है शाइन ऑफ एम_ पी_ ।

इस इमेज में हमें एक पेट्रोल पंप दिख रहा है साइड में एक ट्रक खड़ा है।

बीच में रोड बना है पेट्रोल पंप ब्लू यलो और वाइट कलर का है।

इस इमेज में हमें एक शॉप दिख रही है जिसका नाम है टैटू स्टूडियो।

साइड में एक ग्रे कलर की वैन है।

एंट्रेंस यलो और ब्लू कलर की है।

इस इमेज में हमें एक हॉस्पिटल दिख रहा है।

इस इमेज में हमें एक सड़क दिख रही है सड़क के सामने एक होटल है।

ईंटें रखी हैं साइड में होटल बन रही है।

एक लड़की व्हाइट कलर के कपड़े पहेन कर खड़ी है।

इस इमेज में हमें ग्रे कलर के पंखे दिख रहे हैं।

बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं।

इस इमेज में हमें एक यूनिवर्सिटी दिख रही है।

घर के सामने दो लाइटें लगी हैं।

बहुत सारी चेयर और टेबल लगी हैं।

लोग खड़े हैं बाइकें खड़ी हैं।

इस इमेज में हमें एक बस दिख रही है।

इस इमेज में हमें एक हॉल दिख रहा है।

इस इमेज में एक सड़क दिख रही है।

एक ब्राउन गेट दिख रहा है।

एक लाइबरी नोटिस बोर्ड लगा है।

मूर्ति में बहुत सारे हार डले हैं।

आदमी औरत को चाबी दे रहा है।

मॉल के ऊपर बहुत बड़ा बोर्ड लगा है।

यूनिवर्सिटी ब्राउन और वाइट कलर में है।

जो रेड और वाइट कलर की है ब्लू कलर की उसमें --

विंडो लगी हैं बहुत सारी नीचे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं।

साइड में एक पेड़ भी है नीचे बोर्ड लगे हैं।